ये एक सड़क है सड़क पर कुछ लोग चल रहे हैं।

इसके चारो तरफ कुर्सियां पड़ी हुई है जिनका रंग काला है इन।

सामने एक मॉल है जिस पर सिलेक्ट सिटी वॉक लिखा हुआ है इसके बाहर कुछ आदमी और कुछ औरतें चल रही हैं।

ये एक जिम है जिसमे सामने एक आदमी ने ऐनक पहनी हुई है इस।

ये एक पार्लर है जिसमे दो भूरे रंग की कुर्सियां रखी गयी है।

इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें बड़े बड़े दरख्त लगे हुए है जो सब्ज रंग के है।

इसने गले में एक दुप्पट्टा लिया वह जोकि डब्बियो में काले।

ये एक कमरा है जिसमें तीन लड़के कर रहे हैं एक आदमी जोकि--

इनके दाएं और बाएं तरफ बड़े बड़े दरख्त हैं जो की सबज रंग के हैं।

ऊपर छत है छत पर लाइटें जली हुई हैं।